यह एक प्ले ग्राउंड की तस्वीर है जिसमे की कुछ बच्चे--

जल रही है उसी के साथ अंदर बहुत सारी गाड़ी--

टाटा मोटर्स की एजेंसी है जोकि बहोत ही बड़ी है सामने से देखने में लग रही है सामने ही टाटा मोटर का एक बोर्ड भी लगाया गया है।

दुकान दिखाई दे रही है इसमें की बहोत सारी नंबर प्लेटें लगी हुई है दीवार पर और कुछ साथ में ही--

यहां पर एक एजेंसी दिखाई दे रही है जो कि एक हीरो की एजेंसी है उसमें बहुत सारे ही मोटरसाइकल खड़े हैं जो कि एक स्प्लेंडर मोटरसाइकल सा--

एक सामने कैंटीन का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है और कैफे के बाहर--